इसमें पहाड़ दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं घास दिख रही है।

कम्पूटर दिख रहा है पंखा दिख रहा है।